इक माही बहुत बड़ों एक तालाब दिख रहियो है बडा बडा दो पेड़ दिख रहियो है सामने हरी हरी घास लाग रही है एक सूरज डूबतो हुए दिख रहियो है चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है।